यहां पास किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है।

यहां पास एक क्लब फॉक्स नाम की जगह बनी हुई है।

और यहां बहोत सारे अलमारी के खंड भी हैं।

और ए_सी के बगल में फैन भी लगा हुआ हैं एक खिड़की है जहां से धूप आ रही है।

नीचे ग्रे और वाइट कलर की टाइल्स भी लगी हुई है।

जहां पर टेबल कुर्सी भी रखा हुआ है।

जिसमें रेड और ब्लू कलर की काफी सारी लाइन बनी हुई है।

और पीछे पिंक कलर के पर्दे से डेकोरेशन किया गया है।

और कुछ लेडिस मिल कर कत्थक कर रही हैं।

और पीछे भगवान की फोटो भी लगी हुई है।

ये ब्लैक बादल भी हो रहे है नीचे पॉट्स भी रखे हुए --

यहां पास काफी सारे बच्चे खड़े होकर टेबल में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं।

यहां पास ये नवदुर्गा चल रही है।

बहोत सारी कुर्सियां रखी हुईं हैं और बहोत सारे टेबल है टेबल में केचअप की बोतल भी रखी हुई हैं।

लड्डू और मिठाइयां रखी हुई हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है यहां कुछ लोगों ने बहोत सारा खान--

यह एक गार्डन बना हुआ है।

यह एक लिविंग रूम बेड रूम हैं।